कुछ लिखा हुआ है जैसे बांध गुफ़ा सा दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा विद्यालय दिखाई दे रहा है विद्यालय के बाहर एक बड़ी सी बोमरी नजर आ रही है।

इस इमेज में मुझे एक जिम नज़र आ रही है इसमें बहोत सारी हद से भी ज्यादा मशीनें रखी हुई है जो कि--